और शहर से जब लड़के गांव आते हैं तो वो अपने गांव में बोट के सहारे नदी पे तैरते हैं और रोज अपना नदी के सहारे घूमते हैं।